बी.आर.ए. बिहार यूनवर्सिटी मुज़फ्फ्पुर का यह कॉलेज है। जो केमिस्ट्री का लग रहा है की कॉलेज है।

शायद दो गार्ड भी है बैठे हुए। और लाइटिंग का भी सु सुविधा इसमें बहोत ख़ूबसूरत दी गई है।

जिसमें दो ऊनी कपड़े पहने हुए दो जेंट्स है एक वाइट लोअर में साइड में एक --

ऊपर से कर्कट की दीवार है। नीचे खंभे है पान -सात बगल में पेड़-पौधे हैं। बगल में ग्रिल भी है।

जिसमें बगल में रोड साइड में एक कैंपस है जो दीवाल थोड़ा मीडियम टाइप में बनाया गया है। अभी साइड एक --

रोड साइड में एक टाइटन का शोरूम है जिसमें डिस्काउंट की छुट दी गई है बाद बाहर में --